एक वॉचमैन अंकल भी दिख रहे हैं।

ये डाक इंडिया पोस्ट करके एक रुम दिख रहा है।

हमें यहां एक छोटी बच्ची दिख रही--

हमें यहां एक बोहोत ही बड़ा हॉल दिखाई दे रहा--